के आस-पास बहोत सारी पेड़-पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक टावर लगा हुआ है। एक लाइट लगी है जो कि जिन्हे बड़ी लाइट कहते हैं।

और इसके पास में एक बंदा बैठा हुआ है जिसने लुंगी पहनी हुई है। उसके पैर में जो स्लिपर --

जो वाइट कलर का दिखाई दे रहा है और ब्लू कलर का दिखाई दे रहा। उसके दो चोटी बनी हुई हैं। ये जगह किसी पार्क की दिखाई दे रही है। अगर आप उधर देखें तो एक --